दूर पर मुझे पूल जेसे दिखाई ये दे रहे हैं जिसपे आवागमन सुचारू रूप से चलने के लिए इसको बनाया जा--

यह स्टेज ब बना हुआ है स्टेज पर उँ एक प्रति वर्क सामने--

एक कमरे में एक मेज रखा गया है मेज वाईट कलर वाईट एंड ब्लू कलर है यह लोहे का मेज है मेज के सामने--

निचे हरी-हरी घास दिखाई दे रही है ऊपर यहाँ बहोत बड़ी बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

ऊपर बिजली तार भी दिखाई दे रहे है बिजली के खम्बे भी लगे हुए है ऊपर आसमान भी खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

ट्रेक्टर वग़ैरा खींचने उठाने के लिए काम में लाए जाते है यह बहुत भारी मशीन बिछाने के लिए भी अ अ बुलाया जाता है दो कलर का क्रेन है एक नारंगी है और एक येलो ।

यहाँ खालिक जमी एं रोड है रोड पे बहुत दूर तक उम्म--

दूसरी नाव भी है यहाँ पे कई नाव हैं अं उस नाव में भी दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं नदी के किनारे अ--

यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है व्यक्ति कान में एयर फ़ोन लगाये हुए है व्यक्ति स्वेटर भी पहने हुए है व्यक्ति के पीछे हरी घास--

दूर दूर तक पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे है उपर खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

यह हॉल है हॉल में बहुत सारे इ इ रेड कलर के कुर्सी रखे गए हैं कुर्सी के सामने--

यह खेल का मैदान है उमम मैदान में हरी-हरी सूखी घाँश भी है।

यहाँ चारो तरफ चे बहुत सारे बच्चे खेल रहे है सामने बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है बिल्डिंग में खिड़कियाँ भी दिखाई दे रही है चारो तरफ से--

यह गौतम बुद्ध कि प्रतिमा है प्रतिमा ब्लैक कलर की बनी हुई है प्रतिमा के कपड़े प्रिंटेड हैं।

प्रतिमा के पीछे दीवाल है जो ब्लैक कलर की दीवार भी है चारों तरफ से शा--

सामने हॉल है हॉल में दीवाल के सहारे एक मिशन बिंग बी दिखाई दे रहे है हाल को वाईट कलर से रंगा गया है ऊपर--

दर्जे के बगल में एक मेज़ भी रखा गया है जिसके नीचे शो-केस भी बना हुआ है जिसपे सामान रख सकते हैं सामने मेज पर--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

ट्रक खड़ा हुआ है सामने पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं सड़क के ठीक किनारे कुछ काम कर रहे है।

दुकान में दुकान में लकड़ी और कांच के रैक बनाए गए हैं जिसपे बहुत सारे सामान रखे गए है।

रक के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी है मोटरसाइकिल के बगल में रिक्शा भी है जो हाथ से खींच कर चलाया जाता है पैडल मारके भी।

बनाए जाते हैं बहोत सारे मोटरसाइकल और रिक्शे दिखाई दे रहे हैं यहाँ बहोत सारे रे लेडीज़ जेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ साइकिल भी है मोटरसाइकिल भी है।

सड़क के किनारे ये पौधे दिखाई दे रहे हैं पौधे घास भी हो सकते है और अनाज के हो सकते हैं पौधे के बगल में--

क्रेन मशीन भी दिखाई दे रही है क्रीन मशीन अलग अलग कलर कि दिखाई दे रहे उनके ठीक सामने--

यह स स सड़क के किनारे बना हुआ अँ वो है जो चारों तरफ से लोहे से घेरा गया है सामने पेड़ भी है।

पेड़ उँ म ब बहोत सारे दिखाई दे रहे हैं औ चारों तरफ से हरे रंग के लोहे से घेरा गया है।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

बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है कुछ दूर पर भी टीन का शेड दिखाई दे रहा है चारों तरफ से पेड़ पौधे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं यहां बिल्डिंग में खिड़की और दरवाजे भी दि--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

दीवार पर अनेक प्रकार की कलाकृतियों की गई हैं कलाकृतियों को रंगा भी गया है।

तभी के आसन बनाए हुए उसी पर बैठाए गए हैं एक व्यक्ति है उब ब जो बिन पूजा कर रहा है सामने फूल बिन रखे गए हैं जो अनेक प्रकार के हैं।

ट्रक के बीचो बिच एक गाडी खड़ी है गाडी उंग सर्विसिंग के लिए रखी गई है ट्रक के बग़ैर अ अ--

गाड़ी के बगल में भी एक गाड़ी है जो ग्रे कलर की है उसके पीछे भी एक गाड़ी है ऊम जो वाइट कलर की है चारों तरफ शे गाड़ी ही गाड़ी दिखाई दे रही है सड़क पे--

ट्रक के किनारे यहाँ बहोत सी ऊँ ऊ फोर विलर खड़ी है कुछ गैरेज के अंदर खड़ी और कुछ सड़क के किनारे खाड़ी है।

इसमें कई कलर के हैं वाईट ब्लैक रेड उंग ग्रे इत्यादि कलर के यहाँ हैं उम्म उप्प उम्म--

गैरिज के ऊपर कार स्टूडियो लिखा हुआ है उंग बोर्ड लिक लगा हुआ बोर्ड पे कार स्टूडियो लिखा हुआ हैं।

ये जुतों का शोरूम भी हो सकता है या दूकान भी हो सकता है यहाँ अनेक प्रकार के डिज़ाइनदार जूते रखे गए हैं जो छोटे-बड़े सभी साइज के जूते हैं।

नीचे जूते का डब्बा भी रखा जूते के ऊपर अं डब्बे के ऊपर जूता रखा गया है सामने कुर्सी भी है कुर्सी पर कोई बै--

और कलीन बिछाई गई जिसपे डिझाइन भी बनाई गई है उस उम वहाँ कुर्सी और मेज़ एज़ सजाए गए हैं।

इस पे स कुर्सी पर सफेद कवर लगी हुई मेज पर र रेड कलर --

नीचे जमीन पर भी रखे गए है एक कुर्सी भी दिकाई दे रही है।